कॉपी भी ढेर सारी है यहां पे बहुत अच्छी दुकान है बहुत बड़ा होलसेलर दुकान है देखने में काफी अच्छे लग रहे हैं। पे फोन भी यहाँ पे मिलता है।

बहुत बड़िया से पिचिंग किया हुआ हैं देख रहे हैं हरे-भरे घास भी लगा हुआ हैं बहुत बड़िया लग रहा हैं देखने में बकरी इसमें चर रहा हैं बहुत सारे घर भी बनाया हुआ हैं बहुत बड़िया लग रहा हैं देखने में हरे-भरे पेड़-पौधे भी हैं।

यहाँ लिखा है सेल म्यूजिक मोटर्स लिखले है यहाँ पे | जो बहुत यहाँ पर देख रहे हैं तीन चार थो कार लगा हुआ है बाहर मोटरसाइकिल लगा हुआ है और काला कार भी है उजला कार भी है | यह बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में कलर बहुत मस्त है यहाँ पे ।

इ नदी में पानी भी है देख रहे है ढेर सारे घर बनाया हुआ है बहुत अच्छे लग रहे घर देखने में ढेर सारे घर बनाया हुआ हरे हरे पेड़ पौधे में अच्छे लग रहे है देख----

यहां आप ढेर सारे पी यहां आप देख रहे है प्लियर सब फील्डिंग कर रहा है और खेल रहा है यहां पे बहुत अच्छे लग रहे है देखने में बहुत हरे-भरे पेड़-पौधे भी है यहां पे भी रखे हुए है ढेर सारे लोग भी आए है देखने वाले --